ये भगवान कृष्णा की मूर्ति है स्टैचू है जिसमे भगवान कृष्णा को बहुत सुंदर से बनाया गया एक बड़ा-सा मोर पंख है उनके माथे पे और वो हाथ मे बांसुरी लिए हुए हैं।